बड़ा मॉल है यहां पर हर एक चीज सब मिलती है खाने की पीने की किराने की।

लग रहा है अभी यहां पर सब लोग आएंगे और बैठ कर पढ़ाई करेंगे कॉलेज की।

कंप्यूटर की कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं।